इसमें एक आदमी है। आदमी टी-शर्ट पहने हुए है।

यहाँ बहुत अच्छा जगह है सुनहरा जगह है यह बहुत मस्त दिख रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी आये हुए है दर्शन करने के लिए।

इसमें बहुत सारे पानी है पानी --

ब्रेंच लगा हुआ है टेबल है है।

पोस्टर लगा हुआ है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है | स्टेज बनाया गया है | माइक रखा हुआ है |